इस फोटो में एक दुकान नजर आ रही है जो अ छै नौ खंदे के कांच के अंदर कुछ लाइटिंग हैं लगे हुए बड़े-बड़े लेटर नजर आ रहें हैं।

फोटो में खाड़ी खाली सड़क नजर आ रही है जिसपे जिला स्वास्थ समिति मघेपुर का नीले कलर से साइन बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो मे हरे कलर का एक गार्डन नजर आ रहा है जिस पर घास लगी हुई है बीच मे कुछ पेड़ और पौधे लगे हुए हैं।

एल.सी.डी. टी.वी. जिसकी स्क्रीन जली हुई दिखाई दे रही है। एक चैनल गेट खम्भे और एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके पेन्ट और पैर दिखाई --